बोहोत सारी ज़ीप लगी हुई है। पांच छै --

ब्लैक कलर का है। गोल्डन का कपड़ा पहने --

कान है किराने का दुकान है।